इंडिया का बोर्ड लगा है टाटा स्काई और बजाज फाइनेंस का कोई इ.एम.आई. का शोरूम या ऐसा कुछ है दुकान है नीचे बहुत सारी बाइक लगी है रास्ते है।

स्काई बालू टाइप का है और व्हाइट है काफी छोटे-छोटे घर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसे देख के आप --